एक सिस्टर खड़ी है बड़ी सी स्कूल है इन्न जाली इन्न जाली इन्न जाली है एक छोरा बुशट पहन रखया है नीला कलर के पेंट पहन रखी है काला कलर के जूते पहन रखया है।

इन लाल कलर का रिब्बीन पडया और एन पैड स एन पोधा पडया एन एक--

एक डॉक्टर है दो उंगली कर रखी है मास्क लगा रखी है ऊपर टोपी ओड रखी है चश्मा ओड रखी है एक दो आंगली लगा रखी है मास्क लगा रखो है टोपी लगा रखी है।

और एक आदमी कांच ले राख्या और ह न --

नीला कलर की ड्रेस पहनने की है और नीला कलर का शर्ट है और रखिया कलर की पेंट है सारे बच्चे नीचे का आदमी खड़ा है इन एक छोरा खडा है।

धोले कलर के कटे में तोलण लाग री है इने जाली इन आदमी खड़े एक आदमी ऑरेंज कलर की गंजी पहन रखी ऊपर पीला कलर का टोपा लगा राखी है।

और एक चौकड़ी का बुसट पेहेन रखे है और रंग बिरंगी से मोती से लग रहे है और एक खम्बे से खड़े है।

काला कलर का कच्छा पहर के एक आदमी इयां हाथ रख्या है एक आदमी रेत न हाथ में ले रख्या है एक आदमी में न गमछा बाँध रख्या धोला कलर की गंजी पहर रखी है एक इन्न पाइप सा लटक रख्या है।